समान लादने के लिए ट्रॉली भीं लगी हुई दिखाई दे रहीं हैं।

जहाँ पर मेहमानों के खाने के लिए बफे सिस्टम काफी पूरा बंद किया गया हैं।

इस चित्र में हम एक इमारत देख रहे हैं जो की सफेद रंग की है।

और आस पास हमे बहोत सारे घने हरे--

महिला मछलियां काटती हुई नजर आ रही है। वो इन मछलियों के टुकड़े कर रही है।

एक्सरसाइज यानी कसरत करने के लिए बहोत सारे यहां पर हमें उपकरण नजर आ रहे हैं।

स्टेशन की तस्वीर देख रहे हैं स्टेशन के बाहर की तस्वीर है जहां पर हाजीपुर लिखा है।

लोग यहां पर अपनी पसंद के कपड़े खरीदने के लिए आए हैं।